और हमें आसमान दिखाई दे रहा है सफेद काला काले काले बादल है।

अह इसमें हमें दिखाई दे रहा है स्विमिंग पूल है और स्विमिंग पूल में हमें अह पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है।

अह पेड़ हमें दिखाई दे रहे हैं लगे हुए हैं और आसमान हमें नजर आ रहा है।

तस्वीर में हमें भीड़ दिखाई दे रही है लोगों की बहोत सारे लोग हैं सड़क पर चल रहे हैं खड़े हुए हैं।

हमें बोर्ड पर राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल लिखा दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में दिखाई दे रहे है चैंबर बने हुए में नजर आ रहे है और लोग काम कर रहे है बैठ कर।

हमें और भी सामान रखा दिखाई दे रहा है।

सड़क हमें सुनसान नजर आ रही है और सड़क के उस तरफ हमें अ मयंक नर्सरी का बोर्ड सफेद रंग का लगा नजर आ रहा है।

दिखाई दे रहा है। आसमान नीला नीला और बिजली के तार है।